और व्हाइट डेस्क भी है और एक ब्ल्यू कलर का यहां पर ये टोल भी है।

ये एक पिक्चर है जिसमें ये बड़ा सा ग्राउंड है जो कि यह साइड से बंद करके है।

ये एक पिक्चर है जिसमें एक दरियाऊ छोटा सा दरियाव है।

पीछे ब्लू कलर का पानी है वहां पे दो आदमी दो तीन आदमी है।

तो इन दुकानों के ऊपर भी कुछ बोर्ड है और एक आदमी भी है जिसने ब्लू कलर की शर्ट पहनी है।

वहां पर दीवारों पे बहुत सारी पोस्टर्स लगाकर है जिन पर लिखा है बी बी ग्लो फैसियल इंग्लिश में।

एक गेट के सामने है और दो गेट के थोड़ा दूर है।

यहां पर ये बहोत सारे बच्चे हैं आधे खेल रहे हैं आधे बातें कर रहे हैं।